गेरुआ रंग के भी चेयर्स है और सफेद रंग के भी चेयर्स है और लाइटस और पंखे भी है।

और कुछ पेड़ है जोकि अअअ जिसके पत्ते भी सुख गए है लेकिन कुछ पेड़ है जो अभी अभी उगे है।

अ पूरा पहाड़ में घ-घना पेड़ हुआ नहीं है लेकिन पहाड़ में बहुत ज्यादा घना जंगल भी है।